उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

जोकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर सभी प्रकार के फल फ्रूट रखे हुए हैं।

फ्रूट मिलते हैं बदामे मिलते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे यहां पर आइटम मिलते हैं। खाने-पीने का आइटम --

तरह-तरह की यहां पर एक्टिविटी करते हैं शाम के टाइम बहोत अच्छा यहां पर मोहाल रहता है जिससे कि यहां --

कुछ बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ जिम का भी सामान रखा हुआ है जिसका कोई फैट बढ़ रहा है--

कुछ भी अंग बढ़ रहा है उसे बॉडी शेप में लाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा--

ये एक जगह है यहां पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है लाइटे बहुत अच्छी लगी हुई है नीचे टॉइले बहुत अच्छी लगी हुई है।

यह एक दुकान है यहां पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं जो देखने मे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

ते गर्मी के भी कपड़े मिलते हैं जो देखने में बहोत ही अच्छे लग रहे हैं।

नीचे लाल कलर का पेंट हुआ है और बाहर बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं जिन पर सफेद कलर का पेंट किया हुआ है।

और इसमें चारों तरफ सफेद कलर का पेंट किया हुआ है।

बहुत ही अच्छी लग रही है और इसके नीचे एक कढ़ाई रखी हुई है जिसने गैस में--